बहुत सारी जिम यहां पर दिखाई दे--

यहां पर और फेन फैन भी छोटा मोटा दिखाई दे रहा है।

टिकट एयर टिकट फोटो स्टेट किए जाते हैं।

यहाँ पर एक स्टेज बहुत ही अच्छी तरह से सज--

दो लोहे के छोटे छोटे पाइपे यहां पर रखे हुए हैं बहुत ही लंबी संख्या में यहां पर एक मशीन की खोदाई--

यहां पर एक बहुत ही अच्छा और बड़ा यहां पर ग्राउंड दिख रहा है स्टेडियम का।

यहां पर एक नाई की दुकान दिखाई दे--

दाढ़ी सेट करवा रहा है नाई उसकी दाढ़ी सेट कर रहा है नाई यहां पर हाफ कच्छे में खड़ा है दो यहां पर चेयर हैं यहां पर शीशा लगा हुआ है।

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है यहां पर यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो की--

एक गड्डी यहां पर टोचन कर के ट्रक को ले जा रही है।

बीच में और नीचे भी ए_सी रखी हुई है साइड में भी ए_सी रखी हुई है यहां पर--

यहां लोहे के खंभे खड़े हैं पीछे यहां पेड़ ही पेड़ दिखाए गए हैं दो--